चार चा हर तरफ पहाड़ी नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है इन पहाड़ियों ने इस आसमान को छू लिया हो इन पहाड़ियों पे काफी पेड़ लगे हुए जो की इन पहाड़ियों को --

दिख रहे यहाँ पे ये उत्तरकाशी के जिम आप देख सकते हैं ये जिम है जो की काफी बड़ी जिम है इस जिम में देखिये एक्मेंसेर्सिस करने के लिए काफी सारी मशीने वगेरा है इससे देखिये इसपे ये --

लेट के इसमें डिप्स लगाये जाते हैं इस पर रनिंग की जाति है देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे मशीने हैं जिम में बॉडी शोडी बनती है अच्छी काफी अच्छी।

ये देखिये यहाँ अभी आप लोग देख रहें है नेत्र अनुभाग है यहाँ पर नेत्रों की जाँच की जाती है जनरल वॉड है यहाँ पे।

देखो काफी पहाड़ीयां हैं इसके पीछे और ये पेट्रोल पम्प पे देखो गाड़ी वगैरा खड़ी हुई हैं।

काफी अच्छा लग रहा है ये रेस्टोरेंट कहा का है ये उत्तरकाशी का है ये उत्तरकाशी का रेस्टोरेंट देख सकते हो काफी अच्छा नजारा है ये अंदर का काफी ये टैबल पे पिंक कलर की बॉटल रखी हुई --

ये देखिये ये यहाँ का कार्यालय है जोकि कहा स्थित है यह उत्तरकाशी में इसलिए देखिये पहाड़ियों के पास में ही एक तो कार्यालय है।

ये उत्तरकाशी मे लिखा है ए-ए ये आधार-कार्ड का सेन्टर --

ये देखिए हमको दिख रहा है जो की ये नजारा कत्तरकाशी का ये देखिए उत्तरकाशी का नज़ारा है जहां पे ये बड़ी बड़ी --

ये दाखिए ये जो हमको नजारा दिख रहा है ये यहाँ पे काफी सारे घर बने हुए हैं रोड है --